पेट्रोल पंप पे बगल में एक मोटरसाइकिल लगी है।

रोड का सीन है दुकान के अंदर एक जार रखा हुआ जीसमें पानी रखते--